नावो में हरे सफेद नारंगी और पीले जैसे विभिन्न रंग है।

पगडंडी ईंटे इटों या पत्थरों से बनी हुईं हैं।

होटल के अंदर कुछ हिस्से पे पीले रंग की पुताई की गई है।

प्रवेश द्वार के बाहर सफेद रंग की कार खड़ी है प्रवेश द्वार से गुजर रही सड़क से एक स्कूटी और एक मिनी ट्रैक भी दिखाई दे रही है।

यह एक बाहरी दृश्य है जिसमें एक कच्ची सड़क दिख रही है।

लॉन के किनारे एक घुमावदार रास्ता है जो इमारत की ओर जाता है।

और ऊपर एक छत है प्रवेश द्वार को पीले और सफेद कपड़ो से ढका गया है।

समंदर में बहुत सारे बड़े जहाज दिखाई दे रहे हैं।

सामने मंच पर फूलों की और नीली लाइट की सजावट की गई है।

और सोफे और अन्य फर्नीचर रखे हुए हैं मेहमानों के बैठने के लिए सफेद रंग के कवर वाली कुर्सियां रखी हैं।

जहां कार खड़ी है वहां का फर्श लाल और पीले रंग का है।

बाई ओर एक अधूरा मकान है जिसके खंभे और दीवारें दिख रहे हैं।

चित्र में एक खुला प्रांगन दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ पेड़ पौधे और एक मंदिर जैसी संरचना है।

मंदिर के पास छोटी मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं जो संभवत पूजा या सजावट के लिए है।

में कुछ और पेड़ और एक लाल रंग की गाड़ी भी दिख रही है।

रोड के दूसरी तरफ दो लाल रंग की बाइक और एक सफेद रंग की स्कूटी खड़ी है।

यह एक ऊंचा और पतला झरना है जिसका पानी चट्टानों के नीचे से बह रहा है।

इस दृश्य में सब जगह हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

वेलकम वेलकम ट्रैवल एक एजेंसी का नाम है जिसपे एजेंसी ट्रैवल एजेंसी के मालिक के नाम और मोबाइल नंबर बोर्ड पे दिया गया है।

घर के पीछे घने पेड़ और हरियाली भी है।

यह एक जिम का दृश्य है जिसमें कसरत करने के लिए विभिन्न उपकरण रखे हुए हैं।

जो सड़क के किनारे खड़ी है कार के पीछे कुछ झाड़ है।

और नीले रंग की कवर की से ढकी हुई कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं।

यह एक क कक्षा का दृश्य है जिसमें एक मेज और तीन कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

यह एक खुले मैदान का दृश्य है जिसमें सामने की ओर एक बड़ी हरी घास का मैदान दिखाई दे रहा है।

मैदान के बाई ओर एक बड़ी इमारत है जिसमें कई खिड़कियां और बालकनी हैं।

दुकान का शटर बंद है शटर के बाहर चार गमले दिखाई दे रहे हैं।

एक पंखा दिखाई दे रहा है सफेद रंग का एयर कंडीशन भी लगाया हुआ है।